बलूंस वगैरा भी यहां पे दिखाई दे रहे हैं।

और गेट दिखाई दे रहा है |

यहां पे एक फिश दिखा दे रही है जो कि काफी बड़ी है।

हां दिखाई दे रहा है ये रोड हैं रोड --

और इसके राइट साइड काफी सारा पहाड़ जैसा है |

और मौसम पूरा नीला कलर में दिखाई दे रहा है।

मौसम पूरा वाइट जैसा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक घर जैसा दिखाई दे रहा है |

और काफी सारे यहां पे छोटे-छोटे पेड़ उड़ दिखाई दे रहे हैं।

और जिसके अंदर काफी सारी महिलायें हैं खड़ी हुई हैं |

यहाँ पे एक काफी बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

पाड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे एक एक जमीन पे खड़ी हुई है।

नहीं और एक टी.वी. जैसी मतलब ब्लैक बोर्ड है।